पीछे एक टेम्पू जाती हुई दिखाई दे रही है टेम्पू का कलर लाल है अगल बगल में बड़े बड़े कुछ ट्रक वग़ैरा खड़े किए गए हैं |

व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो की अपने हाथ से अपने फोन को फोटो को क्लिक कर रहा है यह आईने मे देख रहा है।

सामने एक यहां पर बोरा रखा गया है यह रात्रि का समय है आगे वर्कर ने ग्रीन कलर की जैकेट पहन रखी है और सफेद रंग की टोपी पहन रखी है।

यह एक पुस्तक की दुकान है जहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वह शायद कुछ किताबे वगैरा खरीद रहा है सामने डेक्स लगी हुई है जिसकी दूसरी तरफ एक व्यक्ति है।

अंदर सफेद रंग की एल.ई.डी. लाइट लगी हुई हैं जो कि जलती हुई साफ देखी जा सकती हैं। यह रात्रि का समय है। अगल-बगल मे बोहोत सारे पर्ची वगेरा गिरे हुए हैं। सामने बैग लिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्कूल वगेरा कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ वगेरा लगायी गयी है अगल वगल में बहुत सारे लोगो को देखा जा सकता है | निचे ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी घासें लगी हुई है।